कुर्सी लगे हुए दिखाई दे रहे है और ऊपर देखो डेकोरेशन भी किया गया है लाइटे भी जलती दिखाई दे रही है।

और सीढ़ी भी नजर आ रही है।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

और आई लव का निश अं लिखा हुआ है पास में कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर नीचे रेलवे ट्रैक है और ऊपर देखिएगा यहां पर--

और एक व्यक्ति नीचे ढोक देता होगा।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने--

बोर्ड भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास में देखिएगा बैठने की बेंच दिख रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर साइड में एक बंगला दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बाइक के पास में दो व्यक्ति खड़े होकर आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है यहां पर ढेर सारे कांच के दरवाजे खिड़की भी हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है यहां पर ढेर सारी कुर्सी लगी हुई नज़र आ रही है।